किसी सरोवर का सीन नजर आ रहा रहा है जो काफी सुंदर साफ सुथरा लग रहा है इसमे काफी पानी भी है इसमे कुछ पेड़-पौधे भी उगे हुए है।

इसके बाहर का यहां मैदान का सी बाहर का सीन भी नजर आ रहा है यहाँ बहुत सारे लोग आते-जाते नजर आ रहे हैं ईस स्टेशन के बगल मे एक एस.बी.आई. ए.टी.एम. कि एक साखा भी--